इस पिक्चर में एक आदमी खड़ा है एक औरत खड़ी है जो माइक लि हुई है हाथ में और आगे उसके कुछ कॉपी रखी हुई है गाना गाने के लिए खड़ी है और साइड में सोंग बाक्स भी रखा हुआ है और मैट भी बिछा हुआ है ग्रीन और रेड ।

इसमें हमें कुछ लोग खाना देते हुए दिख रहे हैं सर्व कर रहे हे खानो को और कुछ लोग खा रहे हैं और इसमें तीन लड़के जो हैं खाना परोस रहे हैं और दो जो खा रहे हैं।

इसमे कोई वेविनार सभा चल रहा है जिसमे एक आदमी खड़ा होकर माइक के सामने कुछ बोल रहा है और बाकी सब लोग बैठकर कुर्सी पर सुन रहे हैं और इसमे सारे चारो तरफ से पर्दे टंगे है ग्रीन कलर की ।